--जो बच्चों को समझाती हुई नज़र आ रहे है पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है सामने एक लड़की बैठी हुई हैजिसने येलो कलर का--

चाबी रखी हुई दिखाई दे रही है जो गुच्छे मे लगी हुई हैये पेन दिखाई दे रहा है कुछ बुक्स रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ लड़कियाँ पड़ती हुई नजर अ रही है लिखती हुई।

यहाँ पर सामने की तरफ एक स्टेज दिखाई दे रहा है जिसका कलर रेड दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने की तरफ दुकानें दिखाई दे रही है।